पर्ल में फोर और फोरिच लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में फोर लूप और पर्ल में फोरिच लूप मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसके द्वारा हम विभिन्न वैल्यूज के लिए कंडिशन को बार बार चेक कर सकते हैं
जो लूप्स का उपयोग करके किया जाता है
यहाँ पर्ल में विभिन्न प्रकार के लूप्स हैं
फोर लूप फोरिच लूप व्हाइल लूप और do व्हाइल लूप इस ट्यूटोरियल में हम फोर और फोरिच लूप कवर करेंगे
पर्ल में फोर लूप का उपयोग कुछ समय के लिए कोड के भाग को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है
फोर लूप के लिए सिंटेक्स निम्न है फोर स्पेस ओपन ब्रैकेट वेरिएबल इनीशिलाइजेशन सेमीकॉलन कंडिशन सेमीकॉलन इंक्रीमेंट क्लोज ब्रैकेट एंटर दबाएँ
ओपन कर्ली ब्रैकेट्स कई बार निष्पादित होने वाला कोड का भाग क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स अब फोर लूप का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट forloopपीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में forloopपीएल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें हाश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश उ एस र स्लैश बिन स्लैश पर्ल एंटर दबाएँ
फोर स्पेस ओपन ब्रैकेट डॉलर आई इक्वल्स टो ज़ेरो सेमीकॉलन स्पेस डॉलर आई लेस थान ओर इक्वल टो फोर सेमीकॉलन स्पेस डॉलर आई प्लस प्लस क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ
टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ओएफ आई कोलोन स्पेस डॉलर आई स्लैश एन क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन और एंटर दबाएँ
अब क्लोज कर्ली ब्रैकेट फाइल को सेव करने के लिए CtrlS दबाएँ
मैं समझाता हूँ कि फोर लूप क्या करता है
वेरिएबल आई जीरो के लिए इनीशिलाइज होता है
आगे कंडिशन चेक होती है
इस केस में कंडिशन आई लेस थान ओर इक्वल टो 4 है
यदि यह कंडिशन ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड निष्पादित होगा
अर्थात पहला प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू ओएफ आई कोलोन 0 टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
इसके बाद वेरिएबल आई 1 से बढता है
और फोर लूप कंडिशन फिर से एक बार चेक होती है
यह लूप एग्जिट होगा जब आई की वैल्यू 4 से अधिक होगी
इस केस में फोर लूप आई 0 1 2 3 4 के लिए निष्पादित होगी
जो 5 बार 5 टाइम्स का योग है
अब टर्मिनल पर जाएँ
किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
पर्ल हाइफेन सी फॉरलूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
यहाँ यह एक मैसेज प्रदर्शित करता है
forloopपीएल सिंटैक्स ओक अतः हमारे पास कोई एरर्स नहीं है
अब पर्ल फॉरलूप डॉट पीएल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब फोरिच लूप देखते हैं
यदि हम एक अरै के लिए कंडिशन की पुनरावृर्ती करना चाहते हैं हम फोरिच लूप का उपयोग कर सकते हैं
सिंटेक्स है फोरिच स्पेस डॉलर वेरिएबल स्पेस ब्रैकेट्स में एटी थे रते अराय स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट परफॉर्म एक्शन ओन ईच एलिमेंट ओएफ एएन अराय एंटर दबाएँ
क्लोज कर्ली ब्रैकेट कृपया ध्यान दें हम अरै अरै इनीशिलाइजेशन औऱ अरै की परिभाषा आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
अब फोरिच लूप का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट फोरियाक्लूप डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिट में foreachloopपीएल फाइल खोलेगा
कोड के निम्न भाग को टाइप करें हाश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश उ एस र स्लैश बिन स्लैश पर्ल और एंटर दबाएँ
एटी थे रते म्यारे स्पेस इस इक्वल टो स्पेस ओपन ब्रैकेट टेन कॉमा ट्वेंटी कॉमा थर्टी क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ
फोरिच स्पेस डॉलर वर स्पेस ओपन ब्रैकेटat थे रते म्यारे क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएँ और टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट एलिमेंट ओएफ एएन अराय इस कोलोन डॉलर वर स्लैश एन क्लोज डबल कोट सेमीकॉलन
एंटर दबाएँ और क्लोज कर्ली ब्रैकेट फाइल को सेव करने के लिए ctrls दबाएँ
अब मैं समझाता हूँ यह कोड क्या करता है
एक अरै म्यारे घोषित होता है
इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 10 20 और 30
फोरिच लूप की प्रत्येक पुनरावृत्ती में डॉलर वर अरै के सिंगल एलिमेंट को सम्मिलित करेगा
फोरिच कीवर्ड अरै के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए इस लूप को दोहरायेगा
अर्थात कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड प्रत्येक म्यारे एलिमेंट के लिए निष्पादित होगा
back स्लैश एन नई लाइन पर प्रोम्प्ट रखता है
इसका तात्पर्य है कि पहला एलिमेंट 10 टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
फिर 20 और आदि सभी एलिमेंट्स के प्रिंट होने तक
यह लूप म्यारे में सभी एलिमेंट्स के प्रिंट होने के बाद एग्जिट होगा अब टर्मिनल पर जाएँ औऱ किसी भी कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए निम्न टाइप करें
पर्ल हाइफेन सी फोरियाक्लूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न लाइन टर्मिनल पर प्रदर्शित होगी
यहाँ कोई कंपाइलेशन या सिंटेक्स एरर्स नहीं है
अतः पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल फोरियाक्लूप डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
निम्न आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अतः यह फोर लूप और फोरिच लूप के बारे में है
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेम्पल प्रोग्राम्स का उपयोग करके पर्ल में फोर लूप और फोरिच लूप यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है स्पोकन ट्यूटोरियल के रुप में स्ट्रिंग को घोषित करें और इसे पाँच बार प्रिंट करें
colorArray ओपन ब्रैकेट सिंगल कोट में रेड कॉमा व्हाइट कॉमा ब्लू क्लोज ब्रैकेट के रुप में अरै के कलर को घोषित करें और फोरिच लूप का उपयोग करके अरै के एलिमेंट को प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
स मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा